कांचे कांच लगे हे कई ठ कलर म हे एहा सादा म हे एहा लाल म हे एती बर लाल पिला अइसे करके दिखत हे।